और यहाँ बहुत अच्छी लग रही है ये अपने मछली पालन के लिए --

देखो अच्छी तरह टेबले है प्लेटे है सभी प्रकार की फेसिलिटी मिल जाती है यहा पर।

और इसमें ये भाई सभी तरह की जानवरों की सेर शांत मछली और ये पत्थर देख रहे हो खिल वृक्ष देख ने में शानदार लग रहा है भाई क्या गजब है भाई यार।

यह एक मंदिर है जिसमें यह लुगाई एक बार अच्छी तरह से डेकोरेटेड किया गया है और इसमें कई लोग काफ़ी लोग घूमने के लिए आते है ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध भी है।

इस मंदिर में सभी प्रकार की देखो क्या लाइटिंग है यार गजब यार भाई।

कुर्सिया और डम्बल और दिखाई जा रहे है इसमें एक्सरसाइज बॉडी बहुत अच्छी एंड सुक्त मजबूत सिक्स पेग अच्छे बन सकते है।

बाल कटिंग टाई लगी हुई है कोट पहना है स्वेटर पहना हुई है इसकी अच्छी तरह --

अच्छी तरह फोटो खींच दे और अपनी साथ एक भाई और है सो काफी लोग देख रहे है।